यह एक बहुत सुन्दर सा फिगर दिखाया गया है | यह फिगर दिखने में काफ़ी सुन्दर और मस्त फिगर दिखाया गया है।

गया है जो कि सड़क दिखने में काफ़ी सुंदर और मस्त है और यह सड़क बहुत पैसे खर्चे कर के बनाई गई है।

नदी और ऊपर में पुल बने हुए हैं जो की इसको बहुत पैसा खर्चा करके बनाया गया है और बहुत मेहनत से बनाया गया है। यहाँ पे बहुत दूर- दूर से लोग घूमने आते हैं।